आसपास में मशीने लगी हुई है और लाइट जल रही है।

दो पंखे लगे हुए हैं नीचे मेज पड़ी है सोफे पड़े है।

जो हम रोड क्रॉस करने के लिए जानते हैं यह जामीनी बांध है।